हाल में दो सीलिंग फैन भी दिखाई दे रहा है एवं एक छोटा सा काउंटर भी दिखाई दे रहा है जिस पर मे आई हेल्प यू लिखा गया है।

आसपास का वातावरण काफी साफ एवं शांत है।

मंदिर के ऊपर वाली सतह पर एक छोटा सा झंडा भी दिख रहा है जो की लाल रंग का है।

पानी का रंग भूरा है पानी के अगल बगल बहुत से चट्टान हैं।

दिखाए गए दृश्य मे एक बड़ा सा हॉल दिखाया गया है।

गलियारे के अगल बगल बहुत सारे दुकान दिखाई दे रहे हैं।

दिखाये गई छवि में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया गया है।

मछली छोड़े कम ऊंचाई पे है एवं मगरमच्छ थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे है।

आसपास बहुत सारे लोगों के मूर्तियां भी दिखाई दे रहे हैं।

हॉल में बहोत सारे सीलिंग फैन दिखाई दे रहे हैं एवं हॉल की दीवार को सफेद रंग से रंगा गया है।

सभी महिलाओं अपना अपना मैट लेकर उस पर बैठी हुई हैं एवं एक महिला योगासन कर रही है।

दुकान के बाहर एक बड़ा साइन बोर्ड लगाया है जिसपर मखदूम अशरफ टाइल्स एंड मार्बल लिखा गया है।

कमरे में एक बेड भी दिखाई दे रहा है जोकि बहुत ही आधुनिक है।

जैसे पत्ता गोभी आलू टमाटर एवं उसके पास फल भी है।

पेट्रोल पंप के बाहर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जिस पर इंडियन ऑयल लिखा गया है।

ट्रोल पंप में एक बड़ी गाड़ी भी दिखाई दे रही है जो की पीले रंग की है।

रूम की दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया है एवं दीवार पर एक बड़ी सी टी_वी भी दिखाई जा रही है।

दिखाए गए दृश्य में एक बड़ा सा दुकान दिखाया गया है।

दुकान में बहुत ज्यादा एल_ई_डी बल्ब लगाए गए हैं जोकि सफेद रोशनी छोड़ रहे हैं।

दुकान में बहुत सारे साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जैसे एल_आई_सी प्रीमियम प्वाइंट स्टार बाजार इत्यादि।

दुकान में एक छोटा सा काउंटर भी दिखाई दे रहा--

यंत्र मे बहोत सारे बटने हैं अधिकांश बटनों का रंग हरा एवं लाल है।

सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिख रहा है जिस पर कुछ आकृतियां बनाई गई है।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

हॉल की दीवारों को ईंटो के मदद से बनाया गया है एवं हॉल की छत को करकटो के मदद से बनाया गया है।

सामने वाला इमारत हरे रंग से रंगा गया है इमारत में बहोत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

साइनबोर्ड में प्रगति बुक सेंटर लिखा गया है।

किताबें एक के ऊपर एक रखी गई हैं एवं एक व्यक्ति टेबल पर बैठा हुआ है।

पंडाल के आसपास बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं एवं एक काले रंग का हाथी भी नजर आ रहा है।

दोनों लड़कों ने अलग अलग वस्त्र एवं अलग अलग जूते पहने हुए है।

आसपास बहुत सारे चार पहिया वाहन एवं एक बड़ा सा अह बस भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के मुख्य द्वार को फूलों से सजाया गया है।